इस पिक्चर में दिख रहा है कि वेडिंग के बाहर दो लोग हैं।

एक आदमी अपनी सेविंग करा रहा है सैलून में --

वह अभी किसी बैंक के आगे पे --

या पिक्चर फ्लैग होस्टिंग से रिलेटेड है जिसमें कि चर्च के बाहर फ्लैग होस्टिंग की जा रही है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं।

यह पिक्चर किसी हाईवे की है जिसमें की कई ऑटो रिक्शा दिख रहे हैं।

और इस पिक्चर में कई लोग दिख रहे हैं कुछ लोग गुफा के अंदर हैं कुछ लोग गुफा के बाहर हैं ज --

उनके आगे मछली भी रक्खी है और ग्राहक भी है वहा पे मौजूद।

इस पिक्चर में दिख रहा है कि वहाँ दो व्यक्ति किसी निचली जगह पर गए हैं ऊपर से दो पत्थर रखे हुए हैं किसी ने।

इससे पता चलता है की या तो ये पार्किंग स्लॉट है या फिर की कोई गैरज़ है।